ये इंडिया गेट का सीन है यहां पे पीछे इंडिया गेट का सीन बना हुआ है और भारत माता बनी हुई हैं और उन्होंने तिरंगा झंडा लिया हुआ है रात का टाइम है।

जा रही है बैग टंगे हुए जिसने ब्लू जींस और शर्ट पहनी हुई--

ये एक शॉप लगी हुई है यहां पे शटर लगी हुई है और बोर्ड लगे हुए हैं जो नीचे रखे हुए हैं।

बहोत सारे लोग बाहर साइड खड़े हुए हैं साइड में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं दिन का टाइम है।

यह एक बहोत बड़ा पारक बना हुआ है यहां पे एक डस्टबिन बना हुआ है जो--

और मैट बिछी हुई है जो एक ऑरेंज कलर की है और सिविंग कलर की है।

ये एक जंगल का एरिया है यहां पे बहोत सारे जंगल में पेड़ पौधे लगे हुए एक आदमी का हाथ दिख रहा है जो दो एक अंगूठा और एक उंगली दिख रही है उसकी।

ये एक किसी के घर से बाहर का सीन है और यहां पे दिन का टाइम है पीछे घर दिख रहा है।

ये एक कॉरिडोर सा बना हुआ है यहां पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं दो बोर्ड ग्रीन कलर के लगे--

पेंटिंग बनी हुई है वो भी क्लासिकल अह डिजाइन की बनी हुई है।

ये एक तालाब सा बना हुआ है और यहाँ पे एक बर्ड है जिसने जो ब्लैक और येल्लो कलर की पंजी है उसकी फिर येल्लो कलर की चोंच है।